घूमने के लिए आये हुए हैं।

एक मछली मार्केट है यहाँ पे एक बहुत --

बहुत बड़ी पूल बनी हुई है।

यहाँ पे तरह-तरह के खिलौने लकड़ी का --

के लिए आये हुए है।

एक पार्लर है यहाँ पे तीन --

यहाँ पे बोहोत बड़ा गेट --

आये है पैसे निकालने के लिए।

कुछ गाड़ियाँ बगल में खड़े हैं यहाँ पे कुछ --

यह एक नदी है । यह नदी --

बहोत सारे लोग नदी में खड़े होके --

यहाँ पे मुस्लिम लोग --

यह एक अमूल पशु आहार का --